गैरेज की छत में टिन शेड लगा हुआ है और नीचे पाने और काफी सारे इंस्ट्रूमेंट बिखरे पड़े हैं पानी के दो डिब्बे भी राखे गए हैं।

यह किसी विवाह समारोह या पार्टी का दृश्य है।

क्लीनर बैठ रहा है दोनों ट्रक्स के पीछे की ओर टोल बूथ की छत भी दिख रही है।

यह दिखने में काफी खूबसूरत और अच्छा इस्थान लग रहा है।

यह किसी मांगलिक कार्य या किसी सेमिनार --

यह किसी झील का चित्र है उस झील में पानी बहोत गहरा है।

कोई मैकेनिक है जो इस कार के इंजन को सुधार रहा है या इसे स्थापित कर रहा है।

जिसमें बहोत सारी नई नई हीरों की बाइक्स --

पालने योग्य कई रंग बिरंगी मछलियां बेची जाती हैं और एक्वेरियम भी--

सामने की तरफ से बहुत ही शानदार फूलों से सजाया गया है।